सामने की तरफ एक दीवाल दिखाई दे रही है जिस पर रेड पोस्टर लगा हुआ है।

फोटो मे एक ऊपर की तरफ फैन दिखाई दे रहा है| पीछे की तरफ एक दीवाल दिखाई दे रही है जो येल्लो कलर की दिखाई दे रही है। आस --

फोटो में सामने की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है यहां टेंटी की दुकान दिखाई दे रही है यहां आस-पास सामान रखी हुई बहुत सारी चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है जो रेड कलर की दिखाई दे रही----

इस फोटो मे एक शेर को दिखाई जा रहा है शेर सोता हुआ नजर आ रहा है शेर का कलर पीला कलर का दिखाई दे रहा है शेर की पुच दिखाई दे रही है कान दिखाई दे रहे है एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

खाली रोड दिखाई दे रहा है जो गीला दिखाई दे रहा है बारिश का मौसम हैं।

एक गुलाबी गेट दिखाया जा रहा है | ऊपर की तरफ बलून दिखाया जा रहा है और व्हाइट बलून दिखाया जा रहा है ।